येलो रंग की पेंटिंग दिखाई दे रही है दीवार नजर आ रही है दीवार का रंग सफेद दिखाई दे रहा है कागज नजर आ रहे है। -

यहाँ एक जाली दिखाई दे रही है जिसके पीछे दो लट्टू नजर आ रहे है लट्टू का रंग नीला और पीला नजर आ रहा है जाली लोहे की दिखाई दे रही है उसका रंग काला दिख-- -

लकड़ी का एक कबर्ड दिख रहा है इसमे बहुत सारे सामान दिखाई दे रहै है लकड़ी की कबर्ड का रंग भूरा दिखाई दे रहा है नीचे जमीन नज़र आ रहै हैं।